यहाँ बहत भीड़ लगी हुई है।

जहाँ एक गाड़ी दिख चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां इलेक्ट्रिकलस वायर भी दिखाई दे रहे है और पूरे मिट्टी का रास्ता नजर आ रहा है।

यहाँ हमें एक तालाब नजर आ रहा है जहाँ बैठने के लिए भी सुविधा की गयी है।

यहाँ बाइक में भी लोग आए हुए हैं कुछ लोग हमें पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति हमें मछली को साफ करते और दूसरा हमे --

इसे हम झींगा मछली कहते है।

जो की दिखने में छोटे और बड़ी दो प्रकार की होती है।

जहां साइड में एक पत्थर को तोड़ा जा रहा है और यहां पे सफेद कलर की चिड़िया रखी हुई है जिसमें --

और यहाँ पे चर्च के ऊपर हमें क्रिस्चियन के प्लस का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है।

पीले कलर की बनी हुई दिखाई दे रही है और जहाँ बहुत बड़ी गेट भी लगी हुई है।

अपार्टमेट को वाइट कलर से कलर किया गया दिखाई दे रहा हे।

जिनके सामने उनका एक लीडर खड़े है जो उन्हें कुछ जानकारी देते दिखाई दे रहे है।